वे लोग चाय के साथ के बिस्कुट का आनंद ले रहे हैं। होटल काफी साफ़ सुन्दर दिखाई दे रही है।

इस चित्र में हमे कुछ स्कूली छात्राओं द्वारा राखी प्रतियोगिता में भाग लेती दिखाई दे रही हैं। ये बच्चियाँ अपने हाथो से छोटी-छोटी राखिया बना रही हैं।

इस चित्र में हमें एक मैकेनिक कार को सही करता दिखाई दे रहा है। कार का टायर निकला पड़ा है। वह इंजन में कार्य करता हुआ दिखाई देता यह वर्कशॉप के अंदर का दृश्य है।